साइकिल रखे हुए दिख रही है साइकिल के सामने खंबा दिख रहा है खंबा बिजली का है और उसके ऊपर कुछ तार दिख रहे है तार ब्लैक कलर में दिख रहे है और इसके आस-पास में भी कुछ साइकिल वगैरह दिख रही है।

और भी काफी अलग-अलग कलर की बिल्डिंग दिख रही है। और कुछ बाल्कनी दिख रही है और कुछ विंडो दिख रही है बिल्डिंगों से। बिल्डिंग के आसपास में कुछ पहाड़ वगैरा दिख रहे हैं जो की काफी ऊंचे --

दिख रही है झंडा येलो कलर में दिख रही है कुछ ग्रीन कलर में दिख रही है यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है इसमें वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा एक बच्ची खड़ी हुई दिख रही है।

और कुछ फ्लावर दिख रहे है और कुछ फ्लावरस से आ कि सामने माला वगैरा लगी हुई दिख रही है कुछ फ्लावर ऑरेंज कलर मे दिख रहे है कुछ व्हाइट कलर के दिख रहे है कुछ येलो कलर मे दिख रहे हे कुछ पर्पल कलर के दिख रहे हैं और कुछ रेड कलर में दिख रहे है और--

और आसपास में जो बिल्डिंग का पेंटिंग कलर है वह वाइट कलर में दिख रहा है। और यहां पर कुछ खंभे वगैरा भी दिख रहे है कुछ ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे है पेड़ पर कुछ पत्तियां है।

गार्डन दिख रहा है गार्डन में काफी सारे पेड़ दिख रहे है पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे है और यहां पर कुछ घास भी दिख रही है घास भी ग्रीन कलर की दिख रही है आसपास में कुछ बिल्डिंग है वगैरा दिख रही है बिल्डिंग का का पेंटिंग अलग-अलग कलर में क्या दिख रहा है।